सुन्दर नजारा दिख रहा है। चारो तरफ अंधेरा है और वहाँ पे मोमबत्तियाँ दिए जल रहें हैं।

यहाँ कई लोग जमा है और यहा कुछ कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोग यहाँ पे --

कोई स्कूल मे और स्टेज पे सभी कोई अपना परफॉर्म कर रहे हैं अपना नृत्य दिखा रहे है। काफी अच्छे तरीके से परफॉरमेंस दे रहे हैं।

हां शादी के लिए कोई कार्यम्क्रम के लिए यहाँं सजाया गया है।

यहाँ हम मछली की दुकान देख रहे है।

कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई अपने रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा है। बहोत ही भीड़ जमा है।

रिबन से और यहाँ कई लोग दिखाई दे रहें है और यहाँ अच्छे से मज़े से कार्यक्रम का मजा उठा रहे हैं।

सभी अपने-अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है तो हमेशा हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाना चाहिए।

यहाँ हम देख सकते हैं की यहाँ एक अ पुरुष और एक बच्चा नजर आ रहा है और उसके पीछे काफी लोग भी दिख रहे हैं जो आपस में बात कर रहे है।

और हमें वाहन चलाते समय किसी भी चीजों पे ध्यान न देकर अपने ध्यान पूर्वक वाहन पे चलाते समय ध्यान देना चाहि --

रंग की है और गाड़ियां कुछ गाड़ियां काले रंग की है और उन्हें बहुत अच्छे से पार्क किया गया है।

फोन हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी।